और इ लड़कियों को सर खड़े होकर देख रहे हैं और यहां सब लड़कियां ग्रुप में रंगोली बना रही है।